-- बहोत बड़े-बड़े है पानी गिर के नीचे गिर रहा है।

ये घर के बाहर के हिस्से का है।

एक लाइट चल रही है नीचे हरी-हरी घास उग रही है।

एक पिलर लगा हुआ है येलो कलर का शॉप भी अंदर से येलो और वाइट कलर की है एक और पिलर है ग्रीन कलर का--

ये एक क शेमिंग अंडरस का फोटो है जिसमे ताजमहल बना हुआ है।

-- नीचे कांच की खिड़कियाँ लगी हुई है कांच के खिड़कियों के बाहर लोहे की जाली लगी हुई है।

टॉल टॉफ़ी के डब्बे रखे हुए है। चिप्स कुरकुरे के पैकेट रखे हुए है।

एक बगीचा है बगीचे में बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

सामने बहोत बड़े-बड़े शीशे लगे हुए है शीशों के ऊपर बहोत सारी--

एक टेबल है जिसपे ग्लोब रखा हुआ है चार-पाँच कुर्सियाँ रखी हुई हैं एक ए_सी रखा हुआ है मैप रखा हुआ है।